लाल रंक ही चर्च की बिल्डिंग है। चर्च के दो गेट खुले हुए हैं।

स्टेडियम की तस्वीर है यह गोलाई में इसमें बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई है। दो लोग भी नजर आ रहे हैं सीढ़िओ पर।

तरह तरीके की मछलियाँ रखी हुई हैंपीछे एक औरत खड़ी हैपीला सूट पहन कर जिन्होनें पर्स खोल रखा--

ये एक ऑफिस की तस्वीर है| ऑफिस के बाहर एक टेबल है | जिसपे सफेद रंग का कपड़ा डला हुआ है साथ में ही बहुत सारी सफेद रंग की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

अंदर की तरफ एक बहुत बड़ी नाव रखी हुई है नाव पे एक बीच में पिलर है जिसमें चौदह नंबर लिखा हुआ है बहुत ही बड़ी नाव है।

पीछे दीवार पे पर बहुत बड़े-बड़े शीशे लगे हुए हैं। सामने की तरफ भागने वाली मशीन भी है ट्रेडमिल बीच में डम्बल रखे हुए हैं वेट रखे हुए हैं वेट रोड पर वेट लगे हुए हैं।

उसके बाहर र् एक कुर्सी भी रखी हुई है। कुर्सी पे अभी पॉलिथीन भी चढ़ी हुई है। ऊपर कमरे में क्स कोल रोशनदान है। छत पे पंख लगे हुए हैं। एक कुर्सी पे कोई एक बैठा भी हु --

जो कि लकड़ी और कपड़े से बनाया गया है रस्सी से टांगा गया है | आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

जैन धर्म की बोहोत सारी फोटोए रखी हुई हैं कमरे में सामने ही एक घड़ी रखी हुई है गोल घड़ी है जिसमें तीन बज कर पच्चीस मिनट बज रहे हैं।

दीवार पे बहोत बड़ा हरे रंग का पर्दा लगा हुआ है।